जो देखने में बहोत ही अच्छा लग रहा है और यह चार पांच मंजिल का नजर आ रहा है और यह--

यह ट्रैक्टर बहोत ही अच्छी है और चलाने में भी कंफर्टेबल लगती है।

है और एक ट्रेन भी चल रही है। यहां पर साफ सफाई भी--

यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है और इसके अगल बगल गाड़ी भी खड़ी हुई हैं और आदमी भी बैठा हुआ है।